जा मे ते एक मूर्ति बीच में है। एक बगल में है और एक बगल वाली मूर्ति ने हाथ में छतरी जैसे कछु पकड़ रखो है।

जै तस्वीर मेला जैसो दिख रहो।

या मैं तै दो कारे सामने की ओर दिखे रही और ती तीन कारे पीछे की ओर दिख रही।

एक कार के ऊपर में कपड़ों डरो --

औ बा के आसपास में लाल कलर की फ्रेमिंग है।

ऊपर से एक एंगल नीचे की ओर दिख रहो जाके सामने चक्कू जेसो कछु लगो।

बिन मे शिब्बन में ट्यूबलाईट लगीं --

जा तस्बीर में एक बहोत बडो लकड़ी को टेबल दिख रहो।

एक लकड़ी की अलमारी भी दिख रही जहां में कांच के पल्ले लगे --

औ सामने में एक बोर्ड लगो दीवार पे वो कारो रंग को दिख रौ।

जा में बहोत बड़ो मैदान में बहोत सारी कारे दिख रही --

जाकी पूंछ जो है कारे रंग की है बीच मे पीरो रंग दिखरो।

हरे रंग की एक मच्छरदानी जैसी दिख रही।

जहां तस्वीर एक क्लासरूम जैसी दिख रही जिसमें नीले-नीले कलर की चेयरे धरी।

यहाँ में हल्को सो मानी दिखरो। बीच बीच में पत्थरों जैसे कुछउ दिख रहे।

पूजा को बहोत सारा सामान दिख रहो एक आदमी सर पर टोपी लगाए बिनती हाथ जोड़ के पूजा कर रहे।

जिसके ऊपर लाल अक्षर से विद्या भारती बुक डिपो लिखो है।

पीछे और कुछ नीले रंग से लिखो जो पढ़ते ना बन्नो हो और फिर बा के पीछे विद्या भारती बुक डिपो पीले रंग से लिखो दुकान के अंदर रोशनी दिख रही ट्यूबलाइट की एक आदमी पेट पे हाथ धर के खड़ो हो और एक दूसरों आदमी दुकान की तरफ देख --

और सामने इक बडो सो पत्थर धरो है।